आसपास बहुत सारे थे --

श्री गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय--

तब डेट देखने को मिल रहा है।

टाइल्स देखने को मिल रहा है।

मैट बिछा हुआ है।

मुझे यहां पर रोड पर--

स्कूल सा प्ले ग्राउंड है।

वाइट कलर का सफरा पहना--

सोफा रखा हुआ है।

मुझे यहां पर एक --

सीरीज दे बगल में पीछे--

बहुत सारा सामान सब रखा गया है ऊपर में लाइट लगा है।

पार्क देखने को मिल रहा हैं।

बोल सब पर लाइट लगाया गया--

मस्जिद के सामने माइक लगा हुआ है।

फैन लगा हुआ है घड़ी लगा हुआ है साइड में खिड़की भी हैं।

मुझे यहां पर एक बहुत सारा पुराने जारीता साथ खाना है।

मुझे यहां पर बहुत सारे आदमी देखने को मिल रहा है।

वीविंग रोप देखने को मिल रहा है।

सोफा लगा हुआ है और उससे--

शब्द में टी_वी लगा हुआ है।

आरओ लगा हुआ है पानी पीने वाला।

अ ये यहां पर ये भरा मैदान देखने को मिल रहा है।

बड़ा मैदान में स्काउट गाईड हो रहा है।

मुझे यहां पर एक रेट देखने को मिल रहा है।

उम्म रूम के अंदर नीचे में टाइल्स लगा हुआ है टाइल्स सफेद कलर का है।

उसके बगल में लाइब्रेरी है ऑफिस सब बना हुआ है सब के लिए।

बहुत सारे फोटो टंगे हुए हैं।

यहां पे हमें बहुत सारे गमले देखने को मिल रहा है।

सूरज ढलता हुआ देखने को मिल रहा है।

टेबल भी लगा हुआ है।

था दिवाल सब पे बहुत सारा बैलून टंगा हुआ है।

बहुत सारा फैन भी लगा हुआ है इस कमरे के अंदर लाइट भी लगाया गया है।

गेट के बगल में पोल सब पर लाइट लगा हुआ है।

मुझे यहाँ पर नीचे में डांस देखने को मिल रहा है।

एक बड़ा सा सोफ़ा भी बनाया गया हुआ है।

बहुत सारे गमला देखने तो--